नीले रंग की जीन्स पहन रखी है पीछे एक औरत खड़ी है जिसके हाथ मे बच्चा लगा हुआ हैँ।

यहाँ पे एक रोड जा रहा है जिसमे सफ़ेद पट्टिया जा रही है बराबर में रेलिंग लगी हुई है हरी हरी घास दिखाई दे रही है झाडिया दिखाई दे रही पीछे एक हेलीकाप्टर दिखाई दे रहा है जो की सफ़ेद रंग का है यहाँ पर एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा जिसके जिसके लेस लगा हुआ है।

सारे लदे हुए है जीन पर हरी-हरी पत्तियां दिखाई दे रही है टेहनियाँ दिखाई दे रही है निचे कई सारी चट्टानें दिखाई दे रही है वहां पर कुछ लोग खड़े हुए है पीछे एक महिला खड़ी हुई है जिसने पिले रंग की साडी पेहन रखी हैं।

सलून का दृश्य है जहां पर रंग की दीवार दिखाई दे रही है सफेद रंग की है पीछे एक रैक राखी है जिसपर सामान रखा हुआ है दीवार दिखाई दे रही है।

यहां पर एक केक दिखाई दे रहा हैजो चॉकलेट का बना हुआ है जिस पर कोई पेपर्स लगे हैं चॉकलेट की स्टिक्स लगी हुई है।

एक पहाड़ी नामा दृश्य है जिसमें चट्टान दिखाई दे रही है आगे देखने पर एक आदमी दो तीन आदमी जा रहे है एक आदमी पीछे से जा रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है उसके हाथ में घड़ी बधी हुई है पीछे झाड़िया दिखाई दे रही है और ये बहुत ऊचा रास्ता दिखाई दे रहा है।

मैं मछलियाँ रखी है पीछे कई सारे लोग खड़े है महिला खड़ी हैं जिसने पीले रंग का सूट पहन रखा है।

खंबा दिखाई दे रहा हैं जिसमे रंगों बिरंगे झाड़े लटके हुई हैं उपर फर्स्ट एक पंखा दिखाईं दे रहा हैं पीछे पर्दे दिखाईं दे रहे हैं जो कि हारे रंग के हैं नीचे फर्श दिखाई दे रहा हैं ।